सारे पुरुष को देख पा रहे हैं कि सादे रंग के शर्ट में पहने हुए हैं और काफी लोगों की भीड़ लगी हुई है|

और नित्य कर रहे हैं कोई कार्यक्रम चल रहा है एक्सचेंज पर जहां लड़कियां सज धज के नित्य कर रही हैं|

और शिव जी का अ जो पुतला है उसको काफी कारीगर ने सुंदर तरह से बनाया हुआ है।

सुहाना-सा दिन है आसमान नीला हुआ है हरे भरे-पेड़ नजर आ रहे है सिक्स दरवाजा नजर आ रहा है जिसमे लोग अंदर जा रहे है।

यह एक मंदिर है और मंदिर मे पूजा किया गया है फूल और प्रसाद चढ़ाए गए है भगवान के सामने दिया जलाया गया है काफी सुंदर मंदिर है।